फोर व्हीलर लगा हुआ है एक आदमी है उजला --

देव भवन है उसका नाम ऊपर में टाटा स्काई लगा हुआ है |

अंदर में टेबुल कुर्सी ब लगे हुए है उसमे --

नीचे से जाने का रास्ता बगल में है एक बिल्डिंग एक और है।

इंडियन स्वीट्स कार्नर है।

एक सड़क है अगल-बगल गार्डेन है।